सामने एक एस_पी मैंडीसन कॉलेज बना हुआ है बाहर दरवाजे लगे हुए है खिड़कियां लगी हुई हैं।

और एक थाली पड़ी है बाल्टियां पड़ी है सफेद कलर की --

पीछे एक आदमी खड़ा है रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

और पीछे दो आदमी बैठे हैं स्टूल के ऊपर।

इस फोटो के अंदर एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड के अंदर हरियाली है छोटी छोटी घास लगी हुई है।

इसके पीछे पत्थर की दीवार बनी हुई है दीवार के अंदर और बाहर बहुत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

दरवाजे लगे हुए हैं और खिड़कियाँ लगी हुई हैं बाहर बहुत ज्यादा।

इस घर के आगे एक दीवार बनी हुई है ईंटों की और दीवार के बीच में गेट बनी हुए हैं जिसके अंदर खिड़कियां लगी हुई हैं लोहे की।

आगे सीढ़ियां बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए और घर के पीछे बहुत ही गहरे और बहुत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।

पेड़ों के इधर साइड एक दीवार बनी हुई है पत्थर की।

पीछे और भी कुछ स्टूल वगैरा पड़ी है उसके अंदर बहोत सारा सामान रखा हुआ है ग्राउंड के अंदर कटी कट्टे पड़ी है दीवार के पास --

रूम बने हुए हैं चार्ट लगे हुए हैं एक टेंट लगा हुआ है सामने भी बहोत सारी दुकानें हैं दुकानों के पीछे कुछ गाड़ियां खड़ी है।

एक ब्लैक कलर की टी-शर्ट पेहनी हुई है पीछे गुब्बारे लगे हुए हैं येलो कलर के और ब्लैक कलर के।